यू.पी.स.सी. की नोट्स इग्नू की बुक इस दुकान में मिलती है यह दुकान बहुत बड़ी है सभी लोग यहाँ पे किताब खरीद ने के लिए आते हैं ।

होटल में सारी चीजो की सुविधा अच्छे से दी गयी है। यहाँ पे बोहोत सारे लाइट से इस होटल को सजाए गए --

बोहोत सारे आदमी यहाँ पे आते हैं। काफी सारे लोगो की यहाँ पे भीड़ लगी हुई रहती है। काफी सारे बाइक साइकिल खड़े --